यहा की दिवले एक साइड की ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है एक साइड सिलेटी कलर दिखाई दे रहा है।

है यहां एक दुकान लगी हुई दिखाई दे रही है जिसमें कुछ शटे हैं टंगी हुई और टी-शटे एक साइड फ्रॉक दिखाई दे रही है लाइट लगी हुई दिखाई दे रही है ऊपर पंखा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक बहुत सारी झाड़ीदार पत्तों का गेट बना हुआ दिखाई दे रहा है नीचे ए एक लेडिज खड़ी हुई दिखाई दे रही है कुछ एक साइड पार्किंग दिखाई दे रही है।

यह कुछ गुड्डे है कपड़े पहने हुए दिखाई दे रहे है यहां पोस्टर मे लिखा है एम.आर. परफेक्ट --

इमेज में यहाँ बहूत बड़ी शटर लगी हुई दिखाई दे रही है जिसमें कांच लगे दिखाई दे रहे हैं केले के पत्ते दिखाई दे रहे हैं।